की मशीन है वर्कआउट करने की मशीनस वहाँ पर --

आप लोग देख रहे है रोड पे चल रही है ये कार ।

ये जो आप इमेज देख रहे हो उसमे छत्रपति --

गणेश चतुर्थी की तयारी कर रहे हैं गणेश जी बैठे हैं तो।

इमेज है इमेज आप देख रहे हैं।

ये जो इमेज आपको नज़र आ रही है ये किले की इमेज है।

इसका ऐंट्रान्स गेट दिखाई दे रहा आप--